और उस साइड बहोत बड़ा पत्थर भी रखा हुआ है और यहां एक पुल भी बना हुआ है एक तालाब से --

यहां एक घर बन रहा है यहां चार गो पोल बन गड के लगे बन गया है और ईटा से दीवार उठ रहे हैं।

यहाँ पर बहुत बड़ा पार्क भी है और यहाँ पर छोटे-छोटे घास भी हर जगह है ऐसे लग रहा है कटिंग हुआ हो और यहाँ पे नारियल के पेड़ बहुत सा है --

यह है नीचे की फ्लोर यहाँ कार पार्किंग है और यहाँ पर जनरेटर भी लगे हुए है हर जगह ऊपर में लाइटिंग की व्यवस्था भी है बहुत बड़ा ग्राउंड क्लियर्स भी है।

यह मछली है यहाँ पर मछली बेचे जा रहे है और बाल्टी रखी हुए है और बहुत अच्छी दुकान है और यहाँ पर मछली का स्टॉक भी रखा गया है केरेट में।

यह एक गेरेज है यहाँ पर एक काल कार खुली हुई है नीचे मिस्त्री काम कर रहे है और कार तैयार हो जाने पर हर चीज के वेल्डिंग वुल्डिंग सब होंगे।

यहां एक बाइक शोरूम है यहाँ चार बाइक लगे है लाइन से तीन दिख रहे है एक वहां पर लगा है और यहाँ पर कुर्सी भी है और बड़ा सा--

यहाँ पर एक घना जंगल है और छोटा सा नदी है और यहाँ हरियाली भी है पेड़ पौधे है और आगे लाइन के पोल गए है हर जगह दिख रहे है लाइन के पोल बहुत दौर दूर तक दिख रहे है।

ये हैं होटल यहाँ पर एक दिन का रहने के लिए अच्छे दाम मिल लेते हैं तीन हज़ार एक चार दिन के लिए लेते है और यहाँ पर अच्छे परदे लगे हैं।

यह मेडिकल है और यहाँ पर बहुत अच्छे दाम में जो मार्केट का दाम है वही रेट ये लोग लेते है और प्लाई संमैका का टेबल है।